यह बहुत म बड़ा मदर्स दिखाई दे रहा है।

साइकिल वाली रिक्शा दिखाई दे रही है साइकल दिखाई दे रही है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रही है।

कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही है लाइट का खंबा दिखाई दे रहा है लाइट के तार जा रहे है।

यह एक सब्जी की दुकान है इसमें कैरेट रखी हुई है बंद गोभी रखी हुई है।

बाहर बहुत सारी बाइके के खड़ी हुई है।